यह एक रोड है यहां पर बहुत सारे रिक्शे खड़े हैं।

बहुत सारी लाइटे है गिलास रखे हुए है।

और बहुत सारी कुर्सियां हैं।

एक चट लीले कलर का बोर्ड पोस्टर है।

जहां पे बहोत सारे आदमी काम कर रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

जहां पे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

एक गणेश की मूर्ति है।

व्हाइट लाल और वाइट कलर के बैलूंस है।

पीले कलर के वा व्हाइट कलर के --

दो गमले है और पीछे गुलाबी कलर की कली हो रही है।